बहोत प्यारा लग रहा है सब कुछ बादल दिख रहा है गन्ने का पेड़ है कपड़े टंगे हुए हैं।

अलमारी रखा हुआ है एक अंकल खड़े हुए हैं।

और कमल का फूल है सफेद कलर की टोकनी है ब और--

हरे कलर का टाट पट्टी बिछा है खुर्सी रखा है पाइप है गमले में गुलाब का फूल लगा हुआ है और एक शो पीस वाला टे--

साहू ऑटोमोबाइल करके एक पोस्टर लगा हुआ है अंदर दुकान है कपड़े टंगे हुए हैं।

रेलवे स्टेशन है दरवाजा है पेड़ पौधे रेता मिट्टी पटरी ट्रेन खड़ी है।

रखा हुआ है सड़क है गाड़ियां बाहर भी खड़ी अंदर भी बहोत सारी गाड़ी खड़ी हैं।

रेता है जूता पहना है लड़का शर्ट पहना है पैंट पहना है हाथी है हाथी के दांत है आंख है पैर है।